यह फोटो के अंदर बहुत बड़ा जिम दिखाई दे रहा है जिम के बीचो-बीच एक बॉक्सिंग पंच भी बहोत बड़ा काले रंग का --

फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है घना। उसके बगल में मंदिर --

तथा इसके ऊपर एक भवन भी है जोकि सफ़ेद कलर का दुकानों के दोनों के अंदर काफी सामान नजर आ रहा है।

यह फोटो में आप देख सकते है कि सफ़ेद कलर के रैकर है दो जिनके अंदर --

तथा उसके अगल-बगल किनारे के साइट पेड़ जेने और भवन भी नजर आ रहे तथा दुसरी तरफ --

मेज भी है सफ़ेद कलर का उसपे भी सामान रख रखे है। गोल-गोल की कंगन रखे हैं।

पता हरियाली के मैंदानों के कोने-कोने छोटे-छोटे पत्थर के खंभे बनाये हर एक तरह के और बीच में भवन दिखाई दे रहा है बड़ा-सा।

बाउंड्री है बाउंड्री --

जैसा हम इस फोटो में देख सकते है। यह एक सफ़ेद रंग का बड़ा-सा घर है जिसकी दीवारे ईटों से लाल रंग से है गेट --

देख रहा दो आदमी है। एक आदमी ने काले रंग की टी-शर्ट पेहनी है और लोअर और एक आदमी ने रेड रंग की--